और एक पुतुल है जो ब्लेज़र पहने हुए है।

और पीछे साइड एक फोर व्हीलर लगा हुआ है और चारों तरफ पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उसके पीछे एक मंदिल दिखाई दे रहा दो तीन मंदिल है।